और जेंट्स स टीशर्ट और पैंट पेहेने हुए हैं।

और बहुत सारे बाउंड्री बहुत सारे बाउंड्री वॉल चारो साइड्स दिए हुए हैं।

और पंडाल घेरा हुआ है लाल कलर के और हरे कलर के कपड़े से।

एक टॉवेल पे जैसे उजले कलर के कपड़े का बण्डल बना-बना करके रखा हुआ है।

इस तस्वीर में एक शोरूम दिखाई दे रहा है जो की चप्पलों की शोरूम है।

अअ अं बहोत सारी पत्थरे रखी हुइ हैं।

जिसमें की एक आदमी ऑ एक आदमी बैठ कर के छत की ढलाई कर रहा है और एक आदमी --

और बहोत सारी पौधे और पेड़ दिख रहा है।

साइड में दीवाल पे बहुत सारे पेंटिंग बनाई हुई है।

और अअ लाइट्स का पोल दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक गंगा नदी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में दो मोटर बाइक दिखाई दे रही हैं।